और हरा भरा हैअच्छी साफ सफाई हैं।

रेस्टोरेंट में काफी लाइटें लगी हुई ।

कुछ गुब्बारे टाइप का भी दिख रहा है।

और इस साइड से कुछ रेलिंग है।

यहां पर एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है ।

कुछ बाइकें पोस्ट ऑफिस के पास लगी हुई हैं ।

इसमें कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ।

गमलों में फूल लगे हुए हैं।

जिसमें की सामने एक गोल टेबल है गोल टेबल पर --

बच्चे सफेद ड्रेस में नजर आ रहे हैं।

शिवम् बुक सेंटर ।

सामने हमें दिख रहा है एक के घरों में ए_सी भी लगा हुआ है।

मट्टी खोद के बाहर निकाला हुआ है ।

एक तेजा बुक स्टॉल --

सरदार बल्लम भाई पटेल का फोटो है।

एक लकड़ी का पुल दिख रहा है ।

पार्क के आगे साइड पे एक कार दिख रही है।

सामने एक टीचर नजर आ रहा है जो कि उन्हें पढ़ा रहा होगा।